पोमग्रेनेट्स के रंग लाल रंग के हैं।

रस्ता के बगल वाला वाल बहुत गंदा दिख रहा है।

बैलुन्स के रंग लाल और सफेद रंग के है।

इस आदमी के पीछे की खिड़की में बहुत सारे ग्लास लगे हुए हैं।

जिम में एक बेंच रखा हुआ नजर आ रहा है।

इस छवि में एक सुंदर बिल्डिंग नजर आ रहा है।

इस छवि में एक ट्रैक्टर नजर आ रहा है।

के बगल मे बहुत सारी बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं।

समुंद्र के बगल में कुछ घास नजर आ रही है।

गार्डन के बगल में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस छवि में एक बहुत बड़ा मॉल नजर आ रहा है।

मॉल के छत को कुछ सुंदर लाईटो से सजाया गया है।

इस छवि में बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

बिल्डिंग के बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

लोगों के नीचे की जमीन में बहुत सारी पानी बिखरी हुई है।

इस छवि मै एक स्विमिंग पूल नजर आ रहा है।

इस छवि में दो दुकान नजर आ रहे हैं।

आइन बोर्ड के बगल में एक काले रंग की गे नजर आ रही है।

मस्जिद के आसपास बहुत सारे घर नजर आ रहे हैं।

इस दुकान में एक फ्रिज रखा हुआ नजर आ रहा है।

रस्ते के आसपास बहोत सारी पेड़ पौधे नजर आ रहा है।

इन बच्चों के बीच में एक औरत खड़ी हुई नजर आ रही है।

मंदिर का रंग बहुत सुंदर दिख रहा है।

इस छवि में कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

लोगों के पीछे एक बड़ा बिल्डिंग नजर आ रहा है।

पर्दो के बगल वाले वाल में एक घड़ी नजर आ रहा है।